जिसने एक सफेद कलर का कपड़ा पहना है।

सामने की दृश्य में मुझे एक बहोत बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

सामने के इस दृश्य में मुझे एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

एमपावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड लिखा गया है।

और यहां पे मुझे एक काला फाइल भी दिखाई दे रहा है और उसके बगल में एक नीला पेप्सी का बॉटल भी रखा है।

जहां यह एक स्टेज पे डांस कर रही हैं जिसपे हरे कलर का कालीन बिछाया है।

और नीचे जमीन पे बहुत सारे घास भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पीछे की तरफ बहोत बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और यहां लोहे का मार्केटिंग भी किया गया है।